टेबल पर व्हाइट से परदे से लगाया गया --

और पीछे में एक ग्रीन हाउस को भी दिखाया गया है।

और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया गया है।

इस पिक्चर में एक वैली को दिखाया गया है जहां के रास्ते में दो आदमी चल रहा है।

दुकानदार का चेहरा धक के रखे गए हैं।

बहुत सारे चेयर और टेबल भी रखा गया है।

और बाकी सब उसे ध्यान से सुन रहे हैं।